ये किसी शादी हॉल की तस्वीर है शादी हॉल मे बहुत अच्छे भगवनोओंकी मूर्तिया भी बनाई गयी है। और ये स्टेज बहुत अच्छे--

यहा से देखने पर पानी ही पानी दिखता है और यहा का नज़ारा बहुत ही सुन्दर लगता है देखने के लिए।

सब्जी मार्केट मे सब्जीया मिलती है यहाँ सभी प्रकार की सब्जीया उपलब्ध--

यहा एक बीच मे बहुत छोटासा घर बनाया गया है और यहा आसपास बहुत सारे हरे-बरे पेड़-पौधे लगाया गए है।

एक कपड़े की दुकान है इस कपड़े की दुकान का नाम मम्मी डॅडी शोरूम है इस शोरूम पे सभी बच्चों बड़ो बूढो सभी के कपड़े यहा पर मिलते है और यह बहोत अच्छी दुकान है और यह बहुत अच्छा एक शोरूम भी है।

ईटो से पत्थरों से और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है और यहा पर बहुत सारी सिडिया भी बनाई गई है ये किसी गंगा तट की फोटो है।

बहुत खेती की जा रही है जो की चायपति की जा रही है यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगाए गए है।

यहाँ पे यह चार लड़के हम्म बॅडमिंटन खेल रहे है।